पायदान भी बिछा हुआ है।

साइड में एक ब्लैक कलर की कुर्सी बिछी हुई है।

इसपे मेरठ लिखा हुआ है।

इसमें बहुत सारी बाइके खड़ी हुई हैं स्कूटी भी खड़ी हुई है।

एक लाइट भी लगी हुई है।

और मेज प बहुत सारी किताबें रखी हुई है।

मार्टिन भी लगी हुई है एक स्टूल भी रखा हुआ है।

पर एक एल_इ_डी लगी हुई है।

साइड में कुछ कुर्सियों पर लेडिज बैठी हुई है।

कुछ खाना बना रहे हैं।

साइड में नीले कलर के पर्दे भी लगे हुए हैं।

कुछ बर्ड्स सी भी है।

यहां पर कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं।

आस पास बहोत सारी घास जमी हुई है।

आगे एक ब्लैक कलर की मेज रखी हुई है उस पर एक सूटकेस रखा हुआ है।

यह एक बहोत सुंदर चित्र है।

और मैदान के बीच में एक सड़क भी है छोटी।

कुछ बड़े पत्तों वाले पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां पर कुछ खंभे भी है तार भी है।

यहां पर दूर एक बहोत सारे लोग भी खड़े हुए--

एक लाल कलर का बलब भी लग रहा हैं।

दो बोतल भी रखी हुई है।

यहां पर कुछ बच्चे फ्लैग लेकर बैठे हुए हैं।

एक लड़की ने कुर्सी पे बैठकर एक वीणा भी पकड़ रखा है।

उनके पीछे एक पीले कलर का पोस्टर भी लगा हुआ है।

उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट और नीले कलर की पैंट पहनी हुई।

साइड में भी कुछ पत्थर हैं और यहां पर बहुत सारा पानी भी है।

इनमें कुछ पौधे भी लगे हुए है छोटे छोटे।

पीछे कट्टे भी रखे हुए हैं।

साइड में एक लाल कलर की बॉटल रखी हुई है।

एक तार भी है और एक लकड़ी का गुटका भी पड़ा हुआ है।

यहां पर एक लड़का एक खंभे के सहारे खड़ा हुआ है।

यहां पर एक एक लड़का सेल्फी ले रहा--

और यहां पर कुछ सरिये भी लगे हुए हैं।

रोड भी जा रही है।

यह एक मकान है इसमें एक ए_सी लग रही है।

बहुत सारी विंडो लगी हुई है।

इसके पीछे भी कुछ मकान है।

यहां पर एक बड़ी सी दुकान है।

एक लोग खड़ा हुआ है साइड में।

यहां पर एक लड़का कुर्सी पर बैठ कर कंप्यूटर चला रहा--

उसने काले कलर की जरकिन पहनी हुई है।

वहां पर एक दीवाल भी है।

बीच में एक झोपड़ी टाइप हरे रंग की बना रखी है।